एक पोल लगा हुआ है जिसके ऊपर लाइट दिख रही है और एक आदमी दिख रहा है चलता हुआ और जस्ट सामने बैठने के लिए स्टैण्ड है।

और नीचे पड़ा हैपत्थर दिख रहे हैंपानी दिख रहा है और बाउंड्री लगी हुई दिख रही है सीमेंट की।

ये दिख रहे हैं और कुछ पेड़ दिख रहे हैं। बड़े

उसके पीछे बड़े-बड़े पेड़ दिखयी दे रहे और एक छोटा-सा यहाँ पर ब्रिज दिख रहा है।